यहाँ पे बड़ी-सी बुद्ध देवता की मूर्ति बनी है जो गोल्डन कलर की है।

कुछ गुलाबी हैं हरे हैं नीले हैं। लाल और पर्पल कलर के दिखाई दे रहे हैं और यह सफेद कलर के --

और यहाँ पे एक दूल्हा खड़ा हुआ है। जिसने गोल्डन और लाल कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

यहाँ लेडिज है जो बैठी हुई है और लाइट जल रही है यहाँ पे(पर)।